बुद्ध भगवान का मूर्ति है। बढ़िया मूर्ति है । बना हुआ बढ़िया है । ब्रिटिश राज़ का बना हुआ है । इसमें जो है बहुत-सा आदमी पूजा-वूजा करने के लिए आता है शौक से --

आदमी जा रहा है रोड बना हुआ है गार्डन के तरह है गार्डन में बीच-बीच से रोड बना हुआ है घूमने फिरने के बइठने के है फूल-पत्ती लगा हुआ है।